नीले रंग की एक रेलिंग दिखाई दे रही है रेलिंग के नीचे कुछ--

पीछे की साइड हरे पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं।

मुझे इस चित्र में थैंक नेचुरल आइसक्रीम का बोर्ड --

और कुछ फ्रूट्स के चित्र दिखाई दे रहे हैं।

पिलर बीच में नजर आ रहे हैं बोर्ड पे आइसक्रीम का चित्र बना हुआ है।

मुझे इस चित्र में टॉप एंड टाउन --

साइड में हरे हरे पत्ते और कुछ गुलाबी रंग के फूल लगे हुए हैं।

पीछे की तरफ कुछ बड़े पेड़ लगे हुए हैं घास में एक पानी का फव्वारा लगा हुआ है जिसमें से पानी निकल रहा है।

सामने की तरफ दो मूर्तियां बनी हुई हैं जिसमें औरत नृत्य करती दिख रही है और आदमी ढोल बजाता नजर आ रहा है।

और नीचे लोहे की जाली लगी है एक गेट लगा हुआ है लकड़ी का।

और लड़की बैठी है आधा गेट खुला हुआ है।

एक पौधा रखा हुआ है जिसकी हरी-हरी पई है।

कुछ आदमी काम करते नजर आ रहे हैं।

दो कुर्सियां दिख रही हैं लाल रंग में गिलास रखा हुआ है।

एक टीचर सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई खड़ी हुई हैं।

ऊपर की तरफ लाइट लाइटें लगी हुई हैं।

नीचे की और भी कुछ चड़े और सूखे पत्ते पड़े हुए हैं।

मुझे इस चित्र में एक--

और यहां कुछ डिजाइन में पेड़ लगे हुए हैं पेड़ के पीछे--

मुझे इस चित्र में बास्केटबॉल स्टेडियम नजर आ रहा है।

खड़ी नजर आ रही हैं कुछ बैठी हुई।